सामने एक लड़का खड़ा है जो फोन से अपना --

यहाँ चारो तरफ जंगल दिखाई दे रहे हैं। बड़े-बड़े पत्थर हैं। ऊँची-ऊँची पत्थर भी इसमें लगी हुई है। थोड़ा बहुत घाँस भी दिख रहा है जो कुछ हरे हैं कुछ पीले कलर के हैं जो कुछ सुख भी गए हैं।